बहुत अच्छे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है यहां बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं और काफी सारे --

काफी खूबसूरत सड़के है बहुत सारा पेड़ लल-लगा है।

बहुत बढ़ियाँ बहुत ही सुन्दर है गम --

और जो भी हैबहुत ही अच्छा है बहुत ही लंबा चौड़ा जगह है ये --

और बच्चे यहाँ पर क्लास कर रहे हैं ।

मंदिर मे दो बाजा भी लगा हुआ है --

काफी अच्छा लग रहा है क्लास रूम मे ये शायद बहुत ही अच्छा --

बहुत ही बड़ा प्लांट है ये --

और एक ऊपर में बिल्डिंग है काफी अच्छा पेंटिंग भी है।

नीचे का दुकान है बहुत सुन्दर दुकान है बहुत छोटा दुकान है |

काफी सुन्दर दृश्य है यहाँ का बहुत ही अच्छा दृश्य है ।

काफी खूबसूरत जींस है यहाँ पर --

ये लग रहा है झंडा फहराया गया है यहां पर ।

कोन सी क्लास चल रही है।

बहुत पर्दा लगा यहाँ पर बहुत सारा |

बहुत ही बढियाँ शॉप है इ सब रात का समय है बहुत अच्छा है ।

बहुत बड़ा सामान मिलता है उ शॉप में --

अच्छा नजारा है यहाँ पर काफी बढ़िया है काफी खूबसूरत है।